बंडल भी इस मशीन में है जोकि पीले कलर का है।

यहां पर एक मंदिर का परिसर दिखाई दे रहा है।

रंग अलग अलग हैं पीले रंग के फूल काफी अच्छे दिखाई दे रहें हैं।

सामान्य तरह दूसरे अंगूर से थोड़े बड़े और काले रंग के हैं।